लड़को के लिए है यह अलग अलग प्रकारके हेअरकट और शेविंग करते है।

बारिश हुआ है क्यूंकि ज़मीन पूरा गिला गिला है और झाड भी देख सकते है।

संडे होगा या फिर हॉलिडे रह सकता है और सामने खड्डा खोदा हुआ है पाइप लाइन लगाने --

यह हर चित्र में हम एक एस.बी.आई देख सकते है स्टेट बैंक ऐ.टी.एम यहाँ पे बहुत सारे लोग --

बहुत सारे बड़े बड़े जाड़ भी देख सकते है।

फल के झाड लगाया देख सकते है और पीछे बहुत सारे पेड़ और पोधे भी है।

कहीं बाहर जाने का सोच में वह ऑटो चड़ रहे है।